फिर बिंदिया की पैकेट ये सब देख रहा है नीचे कुछ--

ऐसा पैर है एक पतला सा पेड़ है जिसमें वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

शेरवानी टंगी हुई है शेरवानी बहुत अलग-अलग रंग की शेरवानी टंगी हुई है।

वाट अब हैदराबाद का कुछ बोर्ड लगा हुआ है लगता है कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट या कैफे टाइप का है।

आस पास में दोनों साइड स्टोर दिख रही है और बीच में का रास्ते जाते हुए दिख रहा--

ये एक खाली सा एरिया है कंस्ट्रक्शन साइड है शायद यहां पर कुछ घर टाइप का बन रहा है जहां पर अभी--

छोटा सा पीला टाइप का बहुत सारा पीला टाइप का दिया हुआ है जिसके ऊपर से रॉड निकला हुआ है और गीटी ईटा यह सब गिरा हुआ है।

अ टूरिस्ट ट्रेवलर जो व्यान नहीं होते वो बहन दिख रहा है व्हाइट कलर का--

यहां पर सामने में दो कार खरी हुई दिख रही है व्हाइट कलर का ऊपर में--

व्हाइट कुछ गिरा हुआ है यहां पर और एक का--

सामने मे एक रोड दिख रहा है उसके पीछे कुछ दुकान दिख रही है जहां पर बहोत सारा समान रखा हुआ है अं--

और दो फ्लोर है इसके नीचे के हिस्से में दुकान है कोई राशन का शॉप लगता है आसपास में बहुत सारी बाहर में बोरियां रखी हुई है।

यहां पर एक ग्रीन कलर का घर है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का घर में दो-तीन ए_सि लगी हुई है।

और बाहर में बहुत सारे गारिया खरी हुई है बहुत सारी मतलब--

ये पंप टाइप का कुछ बना हुआ है बुलेट में सामने आसपास में और भी बहुत सारी बुलेट खरी हुई है।

इनर वेयर का शॉप है वहां पर वैसे छोटे-छोटे पैकेट रखे हुए हैं।

ये एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है नीचे में पानी है।

कि जैसे गंगा आरती ये सब नहीं होता है तो वैसा कुछ टाइप का बना हुआ है।

ये कर रही है खेल रही है अच्छा आदमी कुछ लेडीज आसपास में बैठे हुए हैं।

टेबल टाइप का काउंटर टाइप का बना हुआ है पीछे बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

ये इसका चाट चसरा कुछ सामने में बोर्ड बना हुआ है।

सामने में बॉडी बिल्डर टाइप इंसान दिख रहा है।

फ्लेवर की केक रखी हुई है यहां पर कुछ पेस्ट्रीज भी रखी हुई है।

सामने में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है एक अलमारी टाइप का बना हुआ है ए_सी लगा हुआ है इस रूम में और --

सामने में एक ब्लू कलर का बिल्डिंग दिख रहा है और गेट ओपन है खुला हुआ है बाहर का जो वॉल है उसमें--

वन टू थ्री फोर ए बी सी डी का पिक्चर बना हुआ है कुछ बच्चे का पिक्चर बना हुआ है।

बहुत ही सुंदर सा एक मंडप बनाया हुआ है एक खाने का इशटॉल बनाया हुआ है बहोत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ है।

सामने में बहुत सारी सी चेयर रखी हुई है कंप्यूटर कीबोर्ड ये सब रखा हुआ है ये लगता है कोई कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर ये या --

और फ्लैग होस्टिंग हो रहा है शायद सामने में एक फ्लैग रखा हुआ है।

ये गैरेज टाइप का दिख रहा है सामने में एक गाड़ी रखी हुई हैऔर आसपास में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बड़ा सा ग्राउंड है और यहां पर एक बाइक टाइप बाइक ही रखी हुई है ये सब इसके टायर बहुत मोटे-मोटे टाइप के हैं।

सामने में एक वाइट कलर का काउंटर दिख रहा है अ--

शायद इस रूम का काम अभी तक काम चल रहा है आसपास में बहुत सामान गिरा हुआ है इधर-उधर एक सीरिया दिख रही है सामने में--

ये एक दुकान है स्टोर टाइप का दिख रहा है जनरल स्टोर टाइप का यहां पर--

दूसरे हाथ में शंख लिए अ एक पिंक कलर का धोटी पहने हुए हैं।

और गले में एक माला है और आसपास में कुछ लोग उन के आसपास बैठे हुए हैं।

यहां पर सामने में बहुत लोगों की भीर दिख रही है बहुत सारे चेयर --

पे बैठी हुई है और कुछ बच्चा बच्चे भी दिख रहे हैं आसपास में कुछ चेयर दिख रही है लगता है कोई यहां पर--

ये एक छत का ऊपरी हिस्सा पे काम चल रहा है बहुत सारी यहां पर लकड़ियां बास दिख रही है।

यहां पर एक इंसान का पैर दिख रहा है दोनों पैर पे बैंडेज है।

और एक पैर नीचे है एक पैर को थोड़ा उठा के रखा हुआ है एक का रूम में लेटा हुआ है ये --

ये एक छोटा सा हॉल टाइप का है यहां पर बैलून से बहुत सुंदर रेड और वाइट बैलून से डेकोरेशन किया हुआ है।

सुंदर सा एक हॉल टाइप का दिख रहा है जहां पर कुछ बर्थडे पार्टी हुआ होगा शायद--

दीवार बने हुए हैं सामने में ट्रैक्टर है आज सामने में ही खेत दिख रहा है लंबा सा खेत है घर बंगा लगता है किसी का--

एक बाजार का फोटो देख रहा है सामने में कुछ बिल्डिंग्स है कुछ रोड्स किनारे फूट का दुकान लगा हुआ है कुछ बाइक्स दिख रही है।